और लड़कियां देखिये इसके भीतर जा जाकेकैसे सेल्फ़िया और गप्पे शाप्पे कर रही हैं यह पहाड़ देखने में बहुत ही सुन्दर---

और उसके बाद बंद हो जाता है रक्छा बंदन में सब यह बहने ले कर अपने भाई को बांधती है और आपने भाई को लम्बी उम्र की प्राथना--

देखिए रोड के साइड में एक टाइप का कुछ बना हुआ ठेला पर कुछ बेच रहा है।

उस ओर देखिए कैसे ये मटके को राउन्ड कर के इसे सजाए गए हैं। दीवाल पर बहोत से चित्र भी बनाए गयें हैं।

विक्रेता चीज़ है और देखिये रोड पर कैसे यह कार जा रही है जो की--

देखिये ये कैसी हथिनी का प्रतिबिम्ब बनाया गया है ये हथिनी बहुत ही बड़ी और विशालकाय रूप से बनाया गया है।

ये देखिए यह कोई दुकान लग रहा है और दुकान मे कंटर और चावल का बोरी बहोत से बोरी रखे हुए हैं।